यहाँ पे छोटे लाईट्स हैं और यहाँ पे ऊपर ए_ सी हैं यहाँ पे छोटे काले रंग के चेयर्स भी देख सकते हैं।

यहाँ पे बोर्ड लिखा है बी_ बी_ ए बी_ कॉम पी_ यु_ सी और यहाँ पे हम छोटे पॉट्स देख सकते है और यहाँ पे --

यहां बहोत सारे शेल्फ दिखाई दे रहे हैं और यहां पे बहोत सारे चीजे रखे हैं।

यहाँ बुक स्टॉल दिखाई दे रहा है यहाँ पे बोर्ड पे नाम लिखा है विज्ञान बुक सेंटर स्टेशनरी व्होलसेलर बुक सेलर है।

यहां पे कुछ अच्छे ट्रैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं और यहां पे एक दो खराब ट्रैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं।

ये बड़ा सा चर्च है और यहां पे बहोत सारे लोग बैठे हैं और यहां हम लाल रंग की कुर्सी देखते हैं।

और यहां पे हम काले और गोल्डन रंग के बलूंस देख सकते हैं और यहां पे हम थर्टी थ्री नंबर देख सकते है।

पेड़ पौधे हैं और यहां पे आसमान है जो साफ है।

और काउंटर पे कुछ लोग खड़े हुए है और यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं।

यहा एक सिल्वर कलर की कार नज़र आ रही है और यहा पे वाइट कार्स भी है ।

बड़ी बिल्डिंग नजर आ रही है बहोत सारे अलग अलग कलर्स के कार्स हैं और यहां पे हम--

और यहाँ बाजु में हम ऐ_टी_ऍम मशीन भी देख सकते है और यहाँ पे एक बड़ा सा रेफ्रिजरेटर का डब्बा भी देख सकते है।

यहाँ पे बहुत बड़े पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और बहुत हरे पेड़ दिखाई भी हैं और बहुत सारा पानी हैं।

और यहां पे बोट पे दो लड़के बैठे हैं और सेफ्टी जैकेट्स पहने हैं और आसमान में बादल छाए हुए है।

यहां हम बहुत सारे फूलों की मार्केट देख सकते हैं और यहां पे कुछ लोग फूल बेच रहे हैं।

ये बड़ा सा ऑफिस दिखाई दे रहा है और यहां पे एंट्रेंस पे एक कार है बाइक है।

और यहां पे बिजली का खंभा भी है और यहां पे कुछ लोग पैदल चल रहे हैं आसमान भी देख सकते हैं बहुत ही साफ है।

यह एक रिसेप्शन है और यहाँ पे एक बड़ा सा टेबल है काले रंग का और यहाँ पे एक सीलिंग फैन है।

ग्रीन फ्लोर मैट है और यहां पे फैन है छोटे लाइट्स है और यहां पे अलग अलग रंग के जूते है।

यहां पे हम डूबता हुआ सूरज को देख सकते है और ये शाम का वक्त है यहां पे हम--

यहां पे दिखाई दे रहे है दो स्पोर्ट्स बाइक और यहां पे बड़ा सा पहाड़ भी दिखाई दे रहा है।

और यहां पे एक सड़क है यहां पे पानी का नजारा भी देख सकते हैं।

यहां ग्रिलिंग मशीन दिखाई दे रहा है और उसके ऊपर हम--

ये एक कपड़ों की दुकान है यहां पे बहोत सारे अलग अलग रंग के कपड़े हैं।

यहां एक फंक्शन चल रहा है बहोत सारे लाइट्स लगाए हैं यहां पे हम वेटर्स को देख--

यह बहुत सारे लोग जमा भी है और यहां पे बहुत सारे चेयर्स है टेबल्स है और खाने के आईटम्स भी है।